मुझे बहुत सारा साइकिल भी दिखाई मिल रहा है जो कि साइकिल जो कि अलग कलर का बहुत ज्यादा रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे स्टैचू जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि काला कलर का है और उसमें एक पेन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे बाहर बाइक और स्कूटी दिखाई दे रहे रखते हुए।